गेट लगा हुआ है गेट लोहे का है उसके बाहर पोस्टर लगे हुए है जोकि लोहे के--

बनाना भी है ऑरेंज भी है अनार भी है शेब भी है लीची भी है केला भी है बहोत सारे फल रखे हुए हैं।

फर्श में शीशे रखे हुए हैं नीचे डॉल बने हुए हैं और कुर्सियां पड़ी हुई है।

ब्लू कलर का पहने हुए और कट रहे और बहोत सारे सामान रखी हुई है।

आगे बहुत बाइक खड़ी आगे गाड़ी खड़ी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है उसमें सीसा लगे हुए हैं।

बहुत दूर दूर पेड़ दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है और एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये खेत है खेत में यह कुछ ग्ला लाइन टाइप्स बनी हुई है और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

ये ओभर ब्रिज बना हुआ ओभर ब्रिज बहोत बड़ा बना हुआ है पीछे आसमान दिख रहा है ओभर ब्रिज के नीचे पानी ही पानी भरा हुआ है और पीछे बहोत बड़ा सा खम्भा लगा हुआ--

यहां पे एक झील टाइप से पानी गिर रहा है जो कि आसपास पेड़ है और ऊपर से पानी गिर रहा है जो की झील के तरीके से नजर आ रहा है। एक लोग खड़े हैं जो कि हाथ में छाता है।

नीचे पानी गिर रहा है और उस उस जगह पे उस जगह पे पेड़ नहीं है और अगल बगल पेड़ है हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे भी पेड़ है छोटे छोटे से--

ये बहोत बड़ी शॉप है शॉप कपड़े की है और ये शॉप में सारे कपड़े लगे हुए हैं जो रंग बिरंगे कपड़े के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नदी है जो एक बहुत बड़ी नदी है नदी में एक रेलिंग बनी हुई है नदी के अंदर एक खंभा भी लगा हुआ है नदी में छोटे छोटे घास भी लगी हुई है।

छोटा-छोटा सा पॉट में सजाने वाला रखा हुआ है और ये कुछ खाने पीने वाला सामान रखा हुआ है।

ये एक पेड़ है पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं ये गार्डन टाइप से बना हुआ है यहां पे पेड़ लगे हुए हैं और एक ग्रीन ग्रीन कलर की--

यहां पे एक रोप टाइप से बना हुआ है यहां पे मूर्ति रखी हुई है जो कि मूर्ति बनी हुई है मूर्ति बहुत बड़ी सी बनी हुई है और ऐसी भी लगी हुई है और ये --

वेटर लगे हुए हैं जो कि खड़े हुए हैं वेटर और बाकी सब लोग आ और जा रहे है ऊपर फैन लगे हुए हैं वाइट कलर के नीचे मैट बिछाई--

ये एक जंगल हैं जंगल में तार लगे हुए हैं और एक नल भीं लगा हुवा हैं पेड़ बहोत बड़े बड़े लगे हुए और ये --

खेल रहे हैं लंबी लंबी है और है। और बहोत बड़ा जंगल है जंगल में तार भी लगा हुआ है।

पेड़ भी लगे हुए दोनों तरफ शीशा भी लगा हुआ है कंप्यूटर भी लगे हुए हैं और ये कंप्यूटर भी लगा हुआ रखा हुआ लैपटॉप भी रखा हुआ कुर्सी भी रखी हुई है।